रखी हुईं हैं और टेबल भी रखे हुए हैं टेबल के ऊपर जग रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है जहां पे एक ट्रेन खड़ी हुई है।

ब्राउन कलर के हैं और एक गिटार हरा है।

और सामने उनके कुछ पत्थर बड़े-बड़े दिखाई दे रहें हैं और पत्थरों के बीच से पानी --

इस तस्वीर में एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो ईसा मसीह की है।

इस तस्वीर में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और एक मगरमच्छ भी।